एवं काफी सारी गाड़ियां खड़ी है।

यहां पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं।

बने हैं और यहां पर लाइट्स लगाई--

और यहां पर वाइट कलर का पेंट किया--

काफी सारे लोग खड़े हैं और यहां पर काफी सारे पेड़ फूल्स लगाए गए हैं और यहां पर पर्दे--

यहां पर स्कूल बनाया गया है।

हरा भरा घास है लाइटिंग लगी है और यहां पर घर बने है काफी सारे--

अलग अलग दुकानों की पोस्टर लगी हैं साइकिल खड़ी है डस्टबिन रखा है।

यहां पर प्लेग्राउंड बना है यहां पर काफी सारे झूले लगे हैं कुछ लोग बैठे हैं।

यहां पर काफी सारे घर बने हैं यहां पर गमले लगे हैं।

बिल्डिंग बनी हैं पेड्स लगे हैं काफी सारे।

यहाँ पर स्केनर रखा है यहां पर कैलकुलेटर रखा है पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज --

और यहां पर लाइटें लगी हैं पंखा लगा है ए_सी लगा है काफी सारे पेड़ लगे हैं।

यहां पर सहलून बना है। लाइटें लगी हैं। काफी सारे लोग खड़े हैं।

और यहां पर सब पढ़ो सब बढ़ो का बोर्ड लगा है। दीवारों पर पेटिंग की गई हैं। पेड़ लगे हैं।

आसमान दिख रहा है और यहां पर पहाड़ बने हैं एक आदमी खड़ा है।